और इसके सारे पास के जिम्स के जो भी आइटम्स हैं सब येलो कलर में हैं।

एक चर्च है जहाँ पे एक आंटी कुछ बोल रही है माइक मे और यहाँ एक सिस्टर बैठी हुई है।